ये कोई कपड़े का दुकान दिखाई दे रहा है और सामने में स्वेटर वगैरा रखा हुआ है।

कॉम्प्लेट दिखाई दे रहा है यहां पे चार बच्चे हैं दो तीन ब्लैक कलर का और एक--

पूरी खिड़की लगा हुआ है और यहां पर कोई--

ये कोई घर है जिसमें ग्रील लगा हुआ हैं स्टील ग्रील --

बहोत सारे घर दिखाई दे रहा है व्हाइट येलो --

और ये मैकेनिक दिखाई दे रहे हैं मेको और--

बॉर्डर दिखाई दे रहे है बिजली वायर दिखाई दे रहे है और आस-पास में घर भी दिखाई रहे --

ग्रीन कलर का ऐसे कारपेट भी लगा हुआ है।

ये रूम दिखाई दे रहे हैं कोई होटल ऐसा।

और कॉम्प्लेक्स है ऐसा दिखाई दे रहे--

और बच्चे भी दिखाई दे रहे है बहोत सारे कलरफुल पेंट भी बना हु--

पूरे बहोत सारे पंखे हैं जो ऑन नई है लाइट ऑन है।

बहुत सारे स्टूडेंट दिखाई दे रहे है जो पढ़ते हुए दिखाई दे रहे है नीले कलर का शर्ट पहने हुए पूरे स्टूडेंट और जो टीचर है वो ब्लैक कलर का --